ये एक रेलवे ट्रैक की फोटो है जहां साइड में रेलवे क्वार्टर्स --

सैंडल्स की शॉप है जहां पर बहुत सारे शूज --

और सैंडल लगे हुए हैं यहां आगे की तरफ--

ये एक रेलवे स्टेशन की फोटो है जिसका--

एक ब्लैक कलर का बोर्ड है जिसमें लुक मि ब्यूटी सैलून एंड स्पा --

अंदर की तरफ कुछ लोग अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।